ब्लैक पैंट पेहेन के और जो घर बना हुआ है ऑरेंज और पिले से बना हुआ है काफी बड़ा है।

में बना हुआ हैं काफी बड़ा हैं और ग्रीन कलर के बहुत सारे पेड़ लगे हुए हैं और एक अंकल जो की रेड शर्ट ब्लाक पॅन्ट पहने है।

हाइट में बहुत बड़ा घर बना हुआ है काफी बड़ा है काफी अच्छा है और ग्रीन कलर के बहुत सारे पेड़ लगे है व्हाइट कलर के बादल दिखाई दे रहे है ब्लू कलर में काफी बड़ा है काफी अच्छा है।

पीले कलर का ये बना हुआ है चर्च का काही अच्छा है कत्ते कलर की खिड़की कत्ते कलर के गेट है रेड सा सीलिंग है।

एक बस है जो की भाईट है और ब्लू है और ब्लाक है काफी अच्छी दिख रही है काच इसके काफी अच्छे है स् स् स्पाईट है।

एक रोड है रोड के बाजू मे बस खड़ी हुई है जो की व्हाइट और रेड जो की इसकी ब्लॅक काच है।